स्विग पुल हैऔर इसमें राउड में खड़े हुए अ अ चलने की व्यवस्था है किनारे-किनारे हरी-भरी पौधा लगा है पीछे बड़ी बिल्डिग है और बच्चे यहाँ पे खेल कूद--

साहमे दर्पण लगा हुआ हैं उस तरफ भी कुछ आदमी दिख रहे हैं कुछ छोटा-छोटा बॉक्स से बनाया हुआ हैं जिसमें स्प्रै रखे हुए हैं और अंदर में दराज जैसे दिख --